इस तस्वीर में मेरे को एक गेट दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मेरे को कुछ कोचिंग क्लासेस दिखाई दे रही है |

इस तस्वीर में दो गेट दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे एक कुआँ बना हुआ है।